ये एक जिम है यहां पर लोग आदमी आकर--

गाड़ियों को हिफाज़त से रखा जाता है और गाड़ियों की हिफाज़त के लिए चौकीदार भी होता है।

ये एक बाघ है यहाँ एक नदी भी है ।

यहाँ बहुत बड़ी जगह है ।